सामणे हम ते यख लोहा कि रेलिंग भी छन लगीं और जु चा यखम एक भिड़ी छा अर भिड़ी पर जु चा घास भीं उगीं।

ईं तस्वीर मा जु चा हम देख सक्दों कि यखम हम ते एक बड़ी सी इमारत दिखेणी और वै पर एक नीला रंग कु बोर्ड छ लग्युं जै पर गंगेस भवन लिख्युं।

और यखम हम ते बहोत सारा लोग भी छन दिखेणा और दूर दूर तक हम ते बड़ा बड़ा भी छन दिखेणा।

ईं तस्वीर मा जु छा हम देख सक्दों की यखम हम ते एक बड़ू सी मकान दिखेणु और मकान का अगवाड़ी हम ते दुई --